बिल्डिंग में शीशे का दरवाजा लगा हुआ है।

इस दृश्य में एक काउंटर दिखाई दे रहा है।

उसके नीचे रांची नगर निगम लिखा हुआ है।

आने जाने के लिए सीढ़ियां भी बनी हुई है।

इस स्लाइडर में दो बच्चे खेल रहे हैं।

और छोटे बड़े बहोत सारे पौधे भी दिखाई दे रहे--

आने जाने के लिए रस्ते भी नजर आ रहे है।

काउंटर का रंग लाल है।

यहां पर बहुत से कुर्सी और टेबल रखे हुए हैं।

सभी कुर्सी और टेबल का रंग काला है।

यहां पर दो व्यक्ति खड़े होकर जिम कर रहे हैं।

इस दृश्य में एक बड़ा सा विद्यालय दिखाई दे रहा है।

जहां पर सुजुकी महालक्ष्मी सुजुकी सर्विस लिखा हुआ है।

गैराज के अंदर बहोत सी गाड़ियां खड़ी हुई दिखाई दे रही है।

यहां पर बहुत से प्राइजेस भी रखे हुए हैं।

जहां पर दो तीन ई रिक्शा भी दिखाई दे रहे हैं।

और उसके नीचे द स्काई हब लिखा हुआ है।

यहां पर बहोत से जिम के इक्विपमेंट रखे हुए हैं।

बोतल के पास एक टिफिन भी है।

बाउंड्री के दीवाल में कृष्ण पैलेस लिखा हुआ है।

इस दृश्य में एक नर्सरी दिखाई दे रहा है।

बस में जय माता दी लिखा हुआ है।

इस दृश्य में एक मशीन रखा हुआ है जो की बिगड़ा हुआ है।

यहां पर बहोत सारे रिक्शे और बाइक भी खड़े हैं।